यहां पर बहोत सारे फ्रूट फल रखे हुए हैं और एक आदमी बैठकर--

पीछे बहोत सारे आर्टिफिशियल फूल दिख रहे हैं बहोत सारी लाइटें दिख रही है और ये दिन--

कुछ खा रहे हैं और थोड़ी बहोत लाइटिंग भी लगी हुई है।

पेड़ भी दिख रहे हैं ऊपर पूरा खुला आसमान दिख रहा है नीचे बहुत सारी छोटी छोटी --

और ये एक दीन का मंजर दिख रहा हैं।

और बाज़ू में बड़े बड़े बिल्डिंगे भी दिख रही है।

ये एक खाली सड़क दिख रही है यहाँ पर दो लाइटे भी लगी हुई है।

बाजू में बोहोत सारी झाड़े भी दिख रही है उपर खुला आसमान भी दिख रहा है।